एक ब्यूटीफुल नेचर है यहाँ एक किला दिखाई दे रहा है माउंटेन भी है स्काई दिखाई दे रही है इधर से--

इधर ब्लैक कलर में बहोत लोग खड़े है।

बहोत सारे फिशेस है स्नेक भी है और एक टोकरी में कुछ तो भी लकड़ी जैसा दिख रहा है।

मोह नीचे मिट्टी है इधर से भी घसरगुंडी है एक -

दो - दो चोटी डाल के सब लोग स्कूल की यूनिफॉर्म में आए हैं।

यह एक गार्डन है एक औरत पौधों को पानी डाल रही है बड़े-बड़े पेड़ है।

बैठने के लिए सब बेंच है और पानी आ रहा है।

एक लड़की वाइट ड्रेस में दिख रही है एक औरत अपने सर पे --

इधर दो कंप्यूटर दिख रहे है छह आठ चेयर दिख रही है व्हील चेयरस है वो--

हरे कलर की एक लग ग्रास है ब्लैक रेड ब्लू और ऐसे बहोत सारे बैग्स दिख रहै हैं एक शूज भी उधर है।

जीरो एट सिक्स सेवन नाइन एंड एट थ्री --

फाइव नाइन जीरो फाइव टू फाइव डबल नाइन ऐसा इसपे लिखा है।

और नीचे ग्रास है एक रिवर है रिवर में एक बोट दिखाई दे रही हैं।

एक दुकान दिखाई दे रही है अलग-अलग प्रकार के चॉकलेट्स वेपर्स बहुत कुछ है हार्टफोटेक्स --

तिक नाम की एक चॉकलेट दिखाई दे रही है।

एक मंदिर है मंदिर का काम चालू है ऐसा दिख रहा है।

बहोत सारे ग्रीन कलर का दिख रहा है वाइट कलर का वो बांद काम चालू है।

अलमारी जैसा कुछ तो भी दिख रहा है अलमारी में बुक्स रखे हुए हैं।

और भी बहुत सारे कंप्यूटर्स है एक तिरंगा दिखाई दे रहा है एक पेपर दिखाई दे रहा है कंप्यूटर के बाजू मे बहोत सारी बुक्स है।

एक लेडी के हाथ में चाबी दे रहै है पीछे भी रेड कलर का गे ब रेड कलर का गेट के ऊपर ऐसे --

यहाँ पे क्रिसमस आए हुए है एक व्हाइट ड्रेस में एक लड़के खड़ी है एक गोल्डन ड्रेस में लड़के खड़ी है।

एक गार्डन जैसा कुछ तो भी दिख रहा है और नर्सरी जैसा अम्म बहुत सारे पेड़ है।

ये सब योगा कर रहे हैं एक कोच उनको सीखा रहा है ।

ये झंडू का फूल है उनके बीच में एक रेड कलर का छोटा --

पूरा ब्लू कलर का टी शर्ट पहन एक लड़का बैठा हुआ है।

ग्रीन और रेड यल्लो उसपे वाइट वाइट का शेड --

ऐसे बोर्ड्स दिख रहे है एक बड़ा- सा तालाब है तालाब के --

ब्लू कलर की डिजाइन है उसके पीछे लड़कियों का ऐसा गोल बनाके--

एक बड़ी- सी शॉप है उस शॉप में तीन आदमी है एक ने मास्क लगा के रखा है व्हाइट कलर का वो मास्क हैं।

मनका फिश पॉइंट एंड चिकन शॉप ऐसा उसपे लिखा हुआ है।

यह आइस क्रीम दिखाई दे रही है अलग-अलग फ्लेवर की तीन आइस क्रीम --